वहा पर नीचे मिट्ठी भी दिखाई दे रही है वहा आगे की तरफ खुब बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है पिच्छे की तरफ एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

यहा पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है जहा पर दो पतीले नजर आरहे वहा लोग नज़र आ रहे।

वहा पर एक ए_सी नज़र आ रहा है साइड मे इलैक्ट्रिक का बोर्ड नज़र आ रहा है व्हाइट पंखा भी दिख रहा है उपर की तरफ बहोत सारी लाइटे जलती नज़र आ रही वहा एक दरवाजा दिख रहा है दरवाजेपर परदा लगा गया है।

यहा पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जहा कुच्छ टेबल लगे है उनके उपर बाल्टिया रखी हुई है और कुच्छ पनीया वगैरे वहा--

और एक बॉक्स भी है वहा पर कुच्छ लोग दिखाई दे रहे है उपर की तरफ दो पंखे दिख रहे पिच्छे एक लाइट भी दिख रहा है एक लईट बंध और एक जलता हुआ नज़र आ रहा पिच्छे कुच्छ टेबल --